ये कोई एटीएम का मशीन है जो छे आदमी को अंदर में है जो पैसा निकाल रहा है लग रहा है।

एगो लोग बाइक से उतर रहा है एक लेडिज अंदर गई हुई है एक कार लगा हुवा है दो डी _टी _एच लगा हुवा हैं। टॉवर बग पीछे मे--